एवं दो बाइक तथा एक टेम्पु पेट्रोल भरवाते हुए दिखाई दे रहा है।

इस पर कुछ लिखा गया है बाईं ओर ऑफिस जैसा कुछ नजर आ रहा है।

पीछे की ओर एक बैनर लगाया गया है जिसमें तेलुगु में कुछ लिखा गया है।

एवं किनारे जमीन नजर आ रही है जिस पे हरे हरे पेड़ उगे हुए हैं।

यहां कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध किया गया है।

एवं कई सारे लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं।

एवं बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसने अपने पूरे बदन में पीले कलर की धोती लपेट रखी है।

तस्वीर एक नर्सरी का है जहां सामने की ओर दीवाल पर एक बोर्ड लगाया गया है।

सामने की ओर एक शख्स खड़ा दिख रहा है जिसने मैरून जैकेट एवं काले पेंट पहन रखी है।

उसके पीछे पानी का जार दिखाई दे रहा है तथा एक डस्टबिन भी है।

इन दोनों जगह एक शख्स का चेहरा बना रखा है।

तथा दाएं और वाले पर एक सफेद कलर का पंखा टंगा है।

यहां एक दीवाल दिखाई दे रही है जिसमें एक बहुत बड़ा सा दरार है।

तथा इन सूपों में कई प्रकार के फल नजर आ रहे हैं।

यहां सामने की ओर हमें कई सारे चावल एवं आटे की रखी बोरिया नजर आ रही है।

ढलता हुआ सूरज भी आसमान में दिख रहा है सामने की तरफ पानी से भरा तालाब है।

तथा इसके चारों ओर भागने का ट्रैक बनाया गया है।